इसके अंदर हमें किसी भवन पुराने भवन के अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें पुरानी कला कृति की दीवारे और बनी हुई दिख रही है जो डिज़ाइन कई संगमर की पत्थर की दिखाई दे रही है जो काफी मजबूत दिखाई दे रही है।